कॉलेज के आगे कुछ साइकिल और गाड़ियां रखी हुई है।

यहाँ पे एक बच्चा स्कूल के बाहर जाते हुए दिख रहा है एक लेडीज दिख --

यह तस्वीर एक कैसीनो से ली गई है।

जिसमें बहुत सारी बैलून लगाए गए हैं।

यहां पे ताश के पत्ते दिख रहे हैं।

कुछ पौधे भी दिख रहे है जो कि बहुत हरे भरे है।

ऐसा दिख रहा है जैसे एक अंडा का फैक्ट्री हो।

यह तस्वीर एक पूजा रूम अ की तरह लग रही है।

कुछ भगवान जी का फोटो भी दिख रहा है जिसमें माला चढ़े हूए हैं।

एक का बाल बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है।

यह तस्वीर किसी रेस्टोरेंट की नजर आ रही है।

टेबल पे लेडीज बैठी हुई है नजर आ रही है।

एक पानी का बोटर रखा हुआ है बैबी --

उसमें सरफ का पानी घुला हुआ नजर आ रहा है।

कुछ लोग नेह सर पे कुछ बांधे हुए दिख रहे हैं।

जिसमें सुरज भगवान को रोकते नजर आ रहे हैं।

एक ठेले पे बाल्टी दिख री है एक व्यक्ति कि ।

डमी ये एरोप्लेन दिख रही है।

यह तस्वीर एक पार्क की नजर आ रही है।

जो कि पार्क बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है।

ब्लैक कलर की पेंट पहने हुए हैं ब्लू कलर की शर्ट पहने हुए हैं।

हारमोनियम और ढोल तासे से सिखाए जा रहे हैं।

दोनों हारमोनियम बहुत ही प्यारी नजर आ रही है।

कुछ लोग दिख रहे हैं जो कि सीरी पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं।

चर्च के चारों तरफ बहुत सारे लोग दिख रहे हैं।

जो कि डांस क्लास बहुत ही बड़ा दिख रहा है।

एक टीचर दिख रहे हैं जो कि सारे बच्चों की अंगूठी पकड़े पकड़ाए हुए हैं।

एक किराने स्टोर में बहुत सारी खाने की सामान सामग्री रखी गई है।

तीन लोग दिख रहे हैं जो कि तीनों लोग बैठे हुए नजर आ रहे हैं।

ब्लू कलर की और वाइट कलर की लाइटे जल रही है।

मस्जिद के चारों ओर पेड़ दिख रहे हैं।

मस्जिद के सामने कुछ लोग दिख रहे हैं।

यह तस्वीर बहुत ही प्यारी दिख रही है।

जिसमें कुछ सामग्री बांस के बने हुए--

एक चेयर रखी हुई है जो कि रेड कलर की है ।

इसमें बहुत सारी खिड़कीयें दिख रहे हैं।

और उसके नीचे एक ट्रांसफार्मर रखे हुए ट्रांसफार्मर दिख रहा हैं।

इस तस्वीर में हमें फ फर्स्ट ब्लैक दिख रहा है।

बहुत ही अच्छी तरह से डिजाइन किए हुए दिख रे है।

यहां की दीवारें पत्थर की नजर आ रही है।

ए गमला में पेर लगा हुआ दिख रहा है।

ये तस्वीरें क्लव की लग रही है।

शानदार लाइटें लगी हुई है।

खंभा दिख रहा है जिसमें बहुत सारे तार लगे हुए हैं।

यहां पे पेड़ भी दिख रहा है और बहुत सारे हरे भरे हैं।

तस्वीर एक डांस क्लास की लग रही है।

यहां पे बहुत ही छोटी छोटी मछलियां रखी हुई गई है।

या तस्वीर घर बनाते हुए कि दिख नजर आ रही है।

एक मिस्त्री दिख रहे हैं जो कि छत को ढाल रहे हैं।

यह तस्वीर जिम ज़ क्लास की है जिसमें बहुत सारे डंबल रखे हुए हैं।

पिक्चर क्लिक करते हुए नजर आ रहे है सामने ।

कुड़ा दान भी रखा हुआ है।

छेनी हथोड़ी को दीवाल पे मारते हुए नजर आ रहे हैं।

दोनों ने पीले कलर की टोपी पहने हुए हैं।